पास में एक मोमबत्ती रखी गई है जोकि ब्लैक और येलो कलर की है आसपास बहुत सारे धुएं नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य एक दुकान का है जिसमें बहोत सारी सामग्री रखी गई है जैसे कि एक डब्बे रखे गए हैं जिसपे एक्साइड एक्सप्लेन ।

यह दृश्य एक दुकान का है जिसके बाहर एक सेनेटाइजर की वाइट कलर की डिब्बि रखी है।

उसके सामने बहुत सारे फूल लगाए गए हैं जो कि ग्रीन और पीले कलर के और ऑरेंज कलर के हैं।

यह दृश्य एक स्कूल का है जिसके एक बगल में बोर्ड पे डायरेक्टर लिखा हुआ है तो एक पे प्रिंसिपल लिखा --

पर मे घड़ी लगाई गई है उसके आसपास बहुत सारे तार जो की अंडर वायरिंग किए गए हैं।

बगल में तीन चार खिड़कियां है जिसका कलर ब्राउन है।

आस पास बहुत सारे बैलून लगाए हुए हैं जोकि ब्लू कलर के रेड कलर के और येलो कलर के है।

पीछे का जो जमीन है वो ब्राउन कलर का है।

गाड़ी के टूटे फूटे हुए सामान फेंके हुए हैं उसके बगल में--

अब इसमें सामने एक ज्वेलरी शॉप दिख रहा है जिस ज्वेलरी शॉप का नाम है रवण मंदिर ज्वेलर ।

यह एक मशीन का दृश्य है जिसका पार्ट आधा खुला हुआ है सामने में एक पंखी लगाई हुई है जो की वाइट कलर की आस पास रेड कलर के हैं।

बगल में एक व्यक्ति जो की नीले कलर का स्कूटी लेके पार हो रहा।

सामने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं उसके अगल बगल टाइल्स बिछाए हुआ हैं।

ऊपर में एक सूती का बोडा रखा हुआ है जो कि ब्राउन कलर का है।

आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो ग्रीन कलर के है।

इस दृश्य में सामने बहोत सारी दुकानें है जिसका शटर बंद है जो की ब्लू कलर का--

पास में एक बाइक लगाई गई है जो की ब्लैक कलर की है।

इसमें दो व्यक्ति खड़े हैं एक व्यक्ति जिसने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ है तो दूसरे व्यक्ति जिसने क्रीम कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट --